चालू है आसपास प्रिंटर रखे हुए है डेस्कटॉप रखे हुए है कुछ बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है अपना सी.एस.एस. ।

संयुक्त उपक्रम शाखा है अलीगंज की और ऊपर की तरफ ओम बना हुआ है बोर्ड के उप --

जिसके पास में दो से तीन लोग खड़े हैं बड़े-बड़े पेड़ बने हुए हैं एक छोटा सा स्कूल कॉलेज जैसा बना हुआ भी दिख रहा --

ट्रेन के अंदर की फ़ोटो है जिसमें ए-एक ट्रेन जा रही है और एक तरफ प्ले प्लेटफार्म से होते हुए जिसमें आसपास में काम चल रहा है और प्लेटफार्म नंबर दो और --

तीन लिखा हुआ है और आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। वेट कर रहे हैं और एक शॉप भी है।

और बोहोत सी गाड़ियाँ हैं जो अंदर रखी हुई हैं बाहर की तरफ आ और गेट खुले हुए है।

की फोटो है जहां पे मेन्यू रखा है। टेबल पर एक टिशू पेपर रखे हुए हैं। पानी का जार रखा हुआ है स्टील का सामने की तरफ वॉश बेसिन है।

एक बच्चा है जो साइड में बैठा हुआ है। एक वैन भी है जो पार्क की गई एक साइड में --

गार्डन की फोटो है जिसमें एक अ-रस्ता गया हुआ है। आस-पास बोहोत सारी हरी-भरी घास है।

ये एक पूल के ऊपर की फोटो है जहाँ से नदी दिख रही है और नदी के आस-पास में बहुत साड़ी हरियाली दिख रही है कुछ बादल छाए हुए है कुछ जंगली पौधे हैं घांस है।

और पूल दिख रहा है जो की सीमेंट का बना है। जिस पे व्हाइट पेंट किया हुआ है।